ई पेटीएम का स्कैनर है।

यह सब मछलियाँ हैं। आदमी लोग मछली खरीदने आए हैं। यहाँ पर मछली का कटाई भी हो रहा है।